यह फोटो खींच रहा है | हरी हरी खेत में देख सकते हैं आप पीछे पेड़ लगे हुए हैं। यह फोटो खींचे में व्यस्त हैं अभी।